इस फोटो में मुझे एक लोहे का बड़ा गेट दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे बहोत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे पंखा दिखाई दे रहा हैं।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

इस फोटो में मुझे एक पार्क दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे पेड़ दिखाई--

इस फोटो में मुझे पेड़ दिखाई दे रहा--

इस फोटो में मुझे पंखा दिखाई दे रहा हैं।

इस फोटो में मुझे स्टेज दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे लड़कियां डांस करते हुए दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे व्हील चेयर दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे फूलों की सजावट दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे कांच का दरवाजा दिखाई दे र--

इस फोटो में मुझे बहोत सारे कुर्सी दिखाई दे रही है।